यह एक पार्क है और इस पार्क में क्रमवध तरीके से पेड़ लगाया गया है जो की देखने में बेहद ही सुन्दर लग रहा है।

यह एक दुकान है ये दुकान का नाम विकास इलेट्रिकल व्हील है यहाँ पर टोटो का चक्का मिलता है जो क़िसी जो किसी का गाड़ी का चक्का अगर खराब हो गया है |